बड़ा सा कम्बल भी दिख रहा है।

का जो मैदान है उसमें बहोत सारे कीच्चड़ दिख रहे हैं।

यहां पे चारों तरफ लकड़ी के सहारे से घेरा गया है।

सभी में गेंदे के फूल के माले पहनाए गए हैं।

छोटी छोटी मूर्तियां में भी पहनाई गई है।

यहां पे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे लाइटें लगी हुई है।

इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

बहोत सारे पंखे के पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं और बैटरी के भी --

ये किसी प्रकार का शॉप का चित्र है।

कुछ लेडिस है और कुछ जेंट्स दिख रहे हैं।

उसके बीच में एक छोटा सा रोज भी रखा हुआ है जो की पिंक कलर में है।

यहां पे एक दुकान भी दिख रहा है।

यहां पे दो टीने भी दिख रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

बहुत सारे व्यक्ति लाइन भी लगे हुए दिख रहे हैं।

इस मंदिर के सामने लिखा हुआ है बाबा जागेश्वनर नाथ मंदिर।

चार चक्के वाले छोटे गाड़ी भी दिख रहे हैं।

ये एक हॉल है जहां पे बहुत सारे पीतल के बर्तन दिखने को मिल रहा है।

यहां जगह जगह छोटे से कारपेट लगे हुए दिख रहे हैं।

टेबल पे एक केक रखा हुआ दिख रहा है।

इसके नीचे बालू भी दिख रहा है।

पानी का डब्बा भी बहुत सारा दिख रहा है।

यह एक कार का चित्र है जिसके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं।

आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट के भी पोस्टर बहुत लगे हुए दिख रहे हैं।

एक साइकल भी खड़ा दिख रहा है।